ए मार्केट सा दिख रहा है यहाँ खूब-खूब पत्ती बिक रहा है।

यह जमुई का है और यहाँ डॉक्टर जो है इलाज वगैरा करते हैं।

अभी हरियाली का रूप लिए हुए है।

और यहाँ नीचे सजावट भी अच्छा ढंग से किया गया है यह भवन भी साफ-सुथरा दिखाई दे रहा है ।

अ और ये ऊपर से का सीन लिया गया है ऊपर से जो कि मकान ही मकान दिखाई दे रहा है।

ये जिम का सीन है यहाँ कुछ लोग जाकर के अपना जो है न मतलब व्यायाम वगैरह करते हैं और अपने शरीर का फिटनेस बनाते हैं।